यहां आपको बादल भी दिखाई दे रहे हैं यहां कुछ घर भी बने हुए हैं।

मुझे यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है जो बहोत बड़ी है।

यहां मुझे एक टेबल भी दिखाई दे रही है जिस पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं।

यहां पर मुझे नीचे चिपे बिछी हुई दिखाई दे रही है।

यहां पर आपको अलग अलग तरह की लाइट जलती हुई दिखाई दे रही होगी।

यहां मुझे एक बड़ा सा हॉल बना हुआ दिखाई दे रहा है।

ऊपर मुझे कुछ खंबे भी दिखाई दे रहे है।

यहां पर मुझे बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।